इस पिक्चर में हमें ब्ल्यू कलर का आसमान--

स्टेज लगी हुई है साथ में ही कुछ पेंटिंग लगी हुई है।

जंगल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का।

गांव में व्हाइट कलर का आसमान--

आसमान का कलर यहां पर वाइट दिखाई दे रहा है।

पीछे एक गेट जो की ब्लू कलर का है।

पीछे हमें बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं ग्रीन कलर का शेल्टर दिखाई --

साथ में कुछ यहां पर हमें--

साथ में ही यहां पर कुछ चीज और कुछ टेबल ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है गोल से आकर के छोटे छोटे बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं।

जो की ब्लैक और हय हल्के व्हाइट कलर की है।

जो कि यहां पर हमें ग्रीन कलर की है।

यहां पर हमें एक नहर दिखाई दे रही जिसमें ब्लैक वाटर दिख रहा--

यहां पर उसका कलर हमें दिख रहा है व्हाइ--

इस पिक्चर में हमें दो गधे दिखाई दे रहे--

जो कि बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है और एक क्रिश्चन की बिल्डिंग नजर आ रही है।

जींस पहनी हुई है यहां पर और साथ में ही व्हाइट कलर का जैकेट पहना हुआ है।

इस पिक्चर में हमें बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग का कलर व्हाइट दिख रहा है।

कुछ बाइक्स पार्क हुए हुए दिख रहे--